एक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि बोरिंग मशीन तथा कम--

मैं देख पा रहा हूं कि यह एक बहुत से बड़ी--

पैकेट और बुक्स भी रखे हुए हैं।

अगल बगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं और कुछ इसके सामने।

और कुछ खंबे भी दिख रहे हैं कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहें --

सामने साइकल लेकर खड़ा है और सब लोग--